और इसका उ आगे नाम लिखा है भारती स्टेट बैंक स्टेशन रोड शाखा चूरू और उसके अंदर एक जनरेटर दिखाई दे रहा है और एक एस.बी.आई. ए.टी.एम. की फोटो --

जो की देखने में सुन्दर है और उसके में हरे हरे पेड़ पौधे--

यहा पर एक पार्क दिखाई दे रहा है और जहाँ पर एक डस्टबिन दो काले रंग के खम्भे और एक लाइटवाला खम्भा और हरे हरे जालियां पेड़ दिखाई दे रहे है।